और लिखा हुआ हैं हैपी .]

यह एक हे गुब्बारे वुब्बारे फेन वेन लगा हुआ हे.

बड़ा लगा हुआ है यही सब है बगल मे गेट डिजिटल हुआ है।

वो नदी के बगल में--

गाड़ी में हेलमेट भी है.

और पेट्रोल पंप में गाड़ी लगी हुई गाड़ी लगी हुई है अंधेरा टाइम है लाइट जला हुआ है.

मे ये टेबुल लगा हुआ है एक बॉटल रखा हुआ है दो सोफा लगा हुआ है.

कुछ गुब्बारा सजाया हुआ हे और एक फेन लगा हुआ ऊपर सिलिंग मे लाइट लगा हुआ हे.

लगा हुआ है दो लाइट जला हुआ हैं.

कॉपी रखा हुआ हे बॉटल रखा हुआ हे पंखा रखा हुआ हे.

ओर यहां जिम है.

हमा है और खेत है.

मइन को ठीक किया जा रहा --

यह एक होल है और यह देखने में तो डां क्ला जेआ लगता है.

डी_जे है इधर दर्पण लगा हुआ है।

ऊपर में दो पंखे लगे हुए है और लाइट लगा हुआ है.

यह नदी है पुल बनाया जा रहा है लगा हुआ है पिलर रहा है.

यह अनामिका रेस्टोरेंट हे बहा-बहार मे तार लगा हुआ हे.

अंदर एक इंसान जा रहा है अंदर.

यह पार हे यहाँ पर एक घर बना हुआ हे.

खम्भा वम्भा हे अभी खम्भा हे लाइट लगा हुआ हे.

यहाँ अगल बगल मे दो तीन दूकान हे